बड़ा-सा बिल्डिंग है यह बिल्डिंग काफी बड़ा है इस बिल्डिंग में दो तल्ले हैं यह बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे भी हैं।

यहां पर बाइक भी खड़ी तीन तीन बड़े गाड़ी भी खड़ी है यहां पर काफी सारे पुलि --

आदमी कुर्सी और टेबुल पर बैठे हैं यहां बहुत से आदमी खाना खा रहे हैं यहां पर खाना प्लेट में दिया जाता है।

यह पंडाल का भी बड़ा है इस पंडाल को कपड़े एवं दरी से बनाया गया है इस पंडाल में तीन गेट रखी गई है।

बकरी भी चर रही है यहां हरी-हरी घांस भी है इस --

यह गैरेज काफी बड़ा है इस गैरेज पर बहोत सी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर एक कार खड़ी है।